मुझे यहाँ पे बाइक दिखाई दे रही है बाइक के पीछे तीन तस्वीरें दिखाई दे रही है एक वोल दिखाई दे रही है एक लाइट भी चालू है यहाँ पे | बाइक के पीछे बाइक के कुछ इंस्ट्रूमेंट भी दिखाई दे रहे है और साथ ही साथ एक टी-शर्ट भी दिखाई दे रही है।

और यहाँ मौसम भी बहुत काफी अच्छा दिखाई दे रहा है | हरियाली का भी थोड़ा सा नजारा दिखाई देने को दिख रहा है और इसी के साथ साथ वो दो लड़के पोज भी दे रहे है।

दो व्यक्ति नज़र आ रहे है जो पत्थरो के बीच में फोटो खींचने की कोशिश कर रहे है और मुझे एक और व्यक्ति नज़र आ रहा हैजिसका सिर्फ एक पेर नज़र आ रहा है पत्थरे भी के अंदर बीच में दो व्यक्ति हँस रहे है।

ये यहाँ पे कुछ बालक और कुछ महिलायें नज़र आ रही है दो महिला यहाँ पे और तीन चार बालक नज़र आ रहे है और वहाँ उनके हाथ में एक किताबे है जो उसको वो पढ़ रहे है।

एक बुजुर्ग इन्‍सान नज़र आ रहा है जो कि काफी जनो समझाने की कोशिश कर रहा है।

नज़र आ रही है जिसके ऊपर जय माता लिखा हुआ है व्हाइट कलर कि बस है और काफी ठंडा माहौल भी नज़र आ रहा है।

दो व्यक्ति गेट के ऊपर पे बैठे हुए हैं स्वागत हेतु और फूलो का भी काफी अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा है | यह रात का सीन नज़र आ रहा है।

उनके पीछे पर्दे लगे हुए है जिसके ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्र भारती पब्लिक स्कूल नज़र आ रहा है।

मुझे एच एफ डी बैंक नजर आ रहा है बै बैंक के सामने एक वॉचमेन भी नजर आ रहा है।